प्रवेश द्वार बने हुए हैं मंदिर में एक लंबा-सा गुम्बज --

एस.बी.आई. का ए.टी.एम. है |

मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं साथ ही साथ बहोत सारी --

यहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग है स्कूल बिल्डिंग के बाहर बहोत ही सुंदर-सा --

ए.टी.एम. के बाहर एक ग्राहक --

जो की एस.एस. एस.भी. --

पेशेंट टेबिल पर लेटे हुए है डॉक्टर उनकी --